दे रहे हैं पहाड़ पर धुप पड़ती नज़र आ रही है कुछ गड़े बने हुए भी दिखाई दे रहे है मिटी लाल कलर की नज़र आ रही है।

दो मज़िल मकान दिखाई दे रहा है जिसकी सीढिया प्रवेश द्वार और मकान पर हरा कलर है जिसके खम्बो पर सफेद कलर पेंट किया दिखाई दे रहा है दरवाजे पर हरा कांच लगा --

फोटो में रोड के किनारे कुछ कार है मोटरसाइकिल पथर के टुकड़े पड़े दिखाई दे रही है सामने एक हरे कलर की ईमारत नज़र आ रही है जिसमे गुंबद नुमा खम्बे लगे हुए है।

इस फोटो में पहाड़ों के बीचों बीच एक पानी का तालाब भरा दिखाई दे रहा है जो बाउंड्री नुमा है इसमें लाल इसमें काले सफ़ेद खम्बे लगे हुए है।

इस फोटो में एक हॉल दिखाई दे रहा है जिसमे नीली कुर्सियां रखी हुई है एक औरत जिसकी मुंडी नज़र आ रही है एक लाल पोस्टर टीवी की स्क्रीन दिखाई दे रही है।

फोटो में एक हरी घास का मैदान दिखाई दे रहा है जिसमे फ़ूड काउंटर लगा हुआ है यहां पर छोटे छोटे बॉक्स रखे हुए है।

फोटो में एक स्टेज दिखाई दे रहा है जिस के ऊपर गुलाबी और सफेद पर्दे लटके हुए नज़र आ रहे है टेबल रखी हुई है जिन पर लाल कवर और नीली जाली लटकी दिखाई दे रही है।

पीले कलर का एक मकान दिखाई दे रहा है जिसकी गुम्बद सफेद और ऊपर झंडा लगा हुआ है।